दुकान है यहाँ पे बहोत सारे साइकिल हैं| रंग-बिरंग ऊपर बहोत सारे लाइट्स लगे हुए यहाँ पे दिन तीन जने हैं।

इसमें बहुत सारी लाइट लगी हुई है| इसके दीवाल का कलर व्हाइट है और वहाँ पे एक खिड़की लगे हुए हैं जिसमें ब्लैक कलर की ग्रिल है।

आ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ पे दो आदमी है जो बेग टाँगे हुए हैं जो ब्लू कलर के ड्रेस पहने एक पिंक कलर के ड्रेस पेहने यहाँ पे बहुत सारे जंगल है जो हरे-भरे हैं।

जो बहुत बड़ी-सी और इसमें पूरे फूल से सजी हुई है गेंदा फूल से | यहां पे एक आदमी है जो रेड कलर के शर्ट पहने हुए हैं और ये ब बस के आगे खड़े हुए हैं।

आर इस साइड में एक बस लगी हुई है और इस यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं।